ऊपर अच्छी तरह से लाइटिंग की हुई है और नीचे फर्श भी टाइलों का बना हुआ है।

तो इस फोटो में हम एक कमरे देख रहे है जहां पे नीचे अच्छी तरह टाइल्स लगाई गई हैं जो कि व्हाईट कलर की हैं।

इस फोटो में एक पुरानी बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है जिसमें हमें सामने इसका नाम भी दिख रहा--

ऊपर की तरफ एक पंखा भी लगा हुआ है अच्छी तरह से लाइटिंग लगी है नीचे टाइल्स लगाई गई है।

पीछे की तरफ हमें दूसरा व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है प्लेट में अच्छी तरह से खाना सजा कर दिया गया है।

इस फोटो में हमें किसी दुकान का दृश्य देख रहे हैं जहां पे ऊपर उसका नाम लिखा गया है बाल दाढ़ी--

जिसने पीले कलर की टी शर्ट पहनी है और--

तो इस फोटो मे हम एक लड़की को देख रहे है जो की एक हाथी के स्टच स्टेच्यू पर खड़ा हुआ है।

पायल और अच्छी तरह से अपने फेस को भी सजाया गया है लंबे बालों को अच्छी तरह से उसमें माला लगाई गई है।

पीछे हमे एक स्टूल भी दिखाई दे रहा है जो शायद ऊपर चढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।

और यह अलग अलग रैक में रखें गए और इसमें--

खाने की चीजे है लगाने की चीजे है बालों की चीजे है टूथब्रशेस है मॉइश्चराइजर है।

यह बेट अलग-अलग कम्पनी के एडीडास के टोन के एस_एस के --

तो इस फोटो में हम एक बहोत सी बड़ी झील को देख रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं और वह नदी हमें चलती हुई साफ दिखाई दे रही है।